दोनों सड़क के बीच में है सड़क पर कार जा रही है।

यह एक होटल है जो कि कर्नाटक में स्थित है यहां पर कुछ आदमी सीढ़ियों से अंदर जा रहे हैं।

अंदर एक मेज रखी हुई है जिसके ऊपर काले रंग का पेंट किया गया है।